ये एक बच्चों का खेल का मैदान लग रहा है।

एक बड़ा सा जंगल दिख रहा है।

और यहाँ बहोत सारी व्यक्ति खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर को दे के ये लग रहा है कि ये एक पेट्रोल पंप है।

देख के ये नजर आ रहा है।

कि ये एक माउंटेन है।

इस पिक्चर को देख के ये नजर आ रहा है।

इस पिक्चर को देख के ये नजर आ रहा है।

इस पिक्चर को देख के ये नजर आ रहा है।

यहां पे काफी सारा सामान फैला हुआ है।

यहां दो पलंग भी रखे हुए हैं।

इस पिक्चर को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि ये--

और यहां पर कई सारी मूर्तियां--

है और यहां कई सारी पौधे भी लगी हुई है।

जहां एक लड़का स्टडी करते हुए दिख रहा है।

और ये नजर आ रहा है की यहां मीटिंग होने वाली है।

और यहां चेयर लगी हुई है।